यहां भी चौड़ा रोड़ है। यहां गाड़ी चलता है आदमी चलता है। एक आदमी बाइक पर जा रहा है।

यहां पानी है इसमें बहुत बड़ा नदी है पानी बह रहा है।

यहाँ बहुत बड़ा बिल्डिंग है बहुत खिड़की है उसमे उजला रंग का पेंट किया हुआ है। बहुत बड़ा है बहुत दूर तक है। बीच में रोड है।

बहुत बड़ा है। लाल रंग का पेंट उजला रंग का पेंट किया हुआ है| लोहा का लगा हुआ है| इस जगह में बहुत बड़ा परती है।

यह भी बहुत बड़ा बिल्डिंग है। बहुत अच्छा लग रहा है| कितना सुन्दर है शीशा का खिड़की लगा हुआ है बहुत सुन्दर लग रहा है| बीच में टाइल्स बिठाया हुआ है बाइक भी है।

यह भी बहुत बड़ा कॉलेज है| बहुत बड़ा है बहुत अच्छा से डिज़ाइन किया हुआ है बहुत अच्छा से बना हुआ है।

उधर साइकिल लगा हुआ है मोटर साइकिल खड़ा है बहुत अच्छा पेड़-पौधा लगाया हुआ है बहुत सुन्दर लग रहा है।